हरा भरा नजर आ रहा है एक मै मैदान नजर आ रहा है खिड़की दरवाजे नजर आ रहे हैं और कुछ--

कुछ पानी की बॉटल्स भी नजर आ रही है और--

एक घर भी नजर आ रहा है कुछ लोग रोड में चलते हुए दिख रहे हैं।

और दुकाने नजर आ रही है कुछ दुकानें बंद नजर आ रही है और कुछ खिड़कियां नजर आ रही --

पानी पानी नज़र आ रहा है।

और नीचे एक झील बनी हुई दिख रही है और कुछ--

और जहां पर बहुत सा सामान नजर आ रहा है।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

और बहुत सा सामान नजर आ रहा है और डेकोरेशन का सामान नजर आ रहा है घड़ियां और मिरर नजर आ रहे हैं।

और प्लेट में टिशू पेपर भी नजर आ रहे हैं।